अ बहोत सारे घरे दिखाई दे रही है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है।

इस इमेज में मुझे एक सैलून दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और रेड कलर का है।

इसमें एक बैनर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है जिसमें व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और दो टॉवर दिखाई दे रहे है जो ग्रे कलर के हैं जिसमें कुछ लाइटें दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है।

और दो सोफे जैसे कुर्सी दिखाई दे रहे है जो ब्लैक कलर के है।

इस इमेज में मुझे एक बहोत बड़ा सा नदी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है।

और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

और बहोत सारे बैनर दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं और वाइट कलर के है और ब्लू कलर के हैं और पिंक कलर के हैं।

और बहोत सारे साइकिले दिखाई दे रही है और कुछ मोटरसाइकिल दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ फोटोज बने हुए हैं और एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और येलो कलर का है।

और बहोत सारे छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है।

और बहोत सारे सामाने दिखाई दे रही है जो रखी हुई है और एक टेबल दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ बाईके दिखाई दे रही है।

और कुछ मशीनें दिखाई दे रही हैं जो ग्रे कलर की है और ग्रीन कलर की है और ऑरेंज कलर की है।